पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हार्ट शैप का बलून दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर दो-दो बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। खम्बे दिखाई दे रहे हैं। लाइटें दिखाई दे रही हैं। काफी ज्यादा सामान रखा है। चूड़ियाँ एयर बेल्ट और बोहोत सारा --

यहां पर एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग सफेद कलर की है और यहां पर सफेद रंग गोल्डन कलर की एक लाइट दिखाई दे रही है जो कि गोल्डन कलर की है।

बलून पीले कलर के हैं और लाल कलर के हैं।